इसके दूसरी तरफ बैंक की इमारत है जो सफेद रंग की बनी हुई है ।

जो मुर्गियों का गोश्त बेच रहे है इसके आसपास काफी तादाद में दरख़्त लगी हुई है ।

तीन मोटरसाइकिल खड़ी है इसके आसपास काफी ज्यादा तादाद में दरख़्त लगे हुए हैं ।

इसकी इमारत सफेद और गुलाबी रंग की है यहां पर बच्चे तालीम हासिल करने के लिए आते हैं इसकी दीवारों के ऊपर खारदार तारें लगी हुई है।